यहाँ ध क्लास ऑफ़ गोल्ड लिखा हुआ इसाईं का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा है मकान को पत्थरों की बनाए हुए खंभे बनाया गया हैं ।